एक बाइक काले रंग की है और इसके पास में अशोका का पेड़ है जो कि गहरे हरे रंग का है उसके बगल में भी एक पेड़ है।

यहां पहाड़ है पहाड़ पर से झरना नीचे की तरफ आ रहा है।

जो सफेद कलर का है पहाड़ है जो धुरा ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है।

यह एक केबिन है केबिन में टेबल है और तीन चार कुर्सियां रखी गई है।

है जो सफेद और नीले रंग का है।

उनमें से कुछ वाइट लाल कलर की है तो कुछ ब्लैक कलर की है।

ये सावले रंग का है इसने चेक्स की शर्ट पहनी हुई है और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है सामने इसलिए एक चप्पल पड़ी हुई है।

शर्ट फोल्ड कर कर के रखे गए हैं प्लेन शर्ट और चेक्स वाली शर्ट।

और तीनों डमू को कपड़े पहनाए गए हैं।

उसके सामने एक आदमी है जिसने स्कूटी लेके खड़ा है उसने रेड टीशर्ट पहनी हुई है।

और मसाला बॉक्स के सामने तीन चार गमले रखे गए हैं मिट्टी के उसमें हरे रंग के पौधे लगे हुए हैं।

कमरे में ब्लैक रंग का सोफा रखा गया है और ब्लैक रंग की चेयर भी है कुर्सी।

और एक ब्लैक रंग का जैकेट टंगा हुआ है दीवार है जो वाइट कलर की है दीवार पर दो लाइटें जल रही है।

यहां एक चौकली रंग का शटर है जो कि बंद है।

यहां एक गिरवेटी पीपीआर का बोर्ड लगा हुआ है।

उसके बाहर बहुत सारी स्मृति और।

यहां एक कमरा है कमरे के दीवार क्रीम कलर की है।

दीवार पर एलईडी लगी है काले रंग की।

जिसकी फर्स है वो क्रीम कलर का है।

उसके बगल में बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की है।

लाल फ्लावर का पिंक कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

और रेड कलर का बोर्ड है जिसपे सफेद रंग से लिखा है डॉक्टर अभिषेक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल।

कुछ बना रही है यहां पे एक औरत खड़ी है जिसमें वाइट कलर का।